कार्टन्स के बगल में पानी की बोतलें रखी गई हैं तथा उसके नीचे एक के मंदिर भी बना है।

जैसे कि अशोक के और यहां पर एक खंभा भी दिखाई दे रहा है।